--पर ऑटोस देखाई दे रहा है जिनका कलर ग्रीन येलो और ब्लैक दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है यहा पे रोड पर पिंक कलर और ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है आसमान मे --

सामान दिखाई दे रहा है मिरर दिखाई दे रहा है दीवार पे येलो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है कबर्ड क मिरर दिखाई दे रहा है बहोत सारा समान बोतल --

दिखाई दे रही है जो की गणेश जी की है यहाँ पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पे येलो कलर के पर्दे दिखाई दे रहे है यहाँ पे स्काइ बालू कलर दिखाई दे रहा है पर्पल कलर दिखाई दे रहा है।

--दिखाई दे रही है कुछ मशीन दिखाई दे रही है यहाँ पे सटल पे ग्रीन ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो ताले लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक बैनर है जो के रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

आसमान का कलर स्काइ ब्लू पर्पल और ग्रे दिखाई दे रहा हैं नीचे पिंक कलर दिखाई दे रहा हैं एक टेबल पे पिंक कलर दिखाई दे रहा हैं।

और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है नीचे येलो कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है और दीवार पे हल्का- सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा हैं।

एलिफेंट दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रे दिखाई दे रहा है उस पे एक व्यक्ति बैठ हुआ है जिसने एक गॉगल्स लगा के रखा है हाथ मे कुछ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के शुज पहने हुए है और उसने ग्रे शर्ट पहनी है।

कोई ग्रह दिखाई दे रहे है परवा पिंक कलर दिखाई दे रहा है यह पे कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ पॉलिथीन दिखाई दे रही है और भी बहोत कुछ--

दिखाई दे रहा है बाइक्स दिखाई दे रही हैजिसका कलर वाइट ब्लैक है यहाँ पे एक बैनर लगा है जो के ब्लू येलो और रेड रेड कलर का है यहाँ पे दीवाल पे येलो कलर दिखाई दे रहा हैं।

कप दिखाई दे रहा है एक प्लेट दिखाई दे रही हैंइसमें काफ़ी दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रही है चेयर्स दिखाई दे रही है टोवेल दिखाई दे रहा है सोफ़ा दिखाई दे रहा है मिरर दिखाई दे रहा हैं।

बहोत सारी चीजें दिखाई दे रही है एक पेड़ दिखाई दे रहा है दीवाल पे व्हाइट ग्रे कलर दिखाई दे रहा है वाइलेट कलर दिखाई दे रहा है एक ए.सी. दिखाई दे रहा है और बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा हैं।

और यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे--